उम् संस्कृतिम कार्यक्रम कर रहें हैं।

यह एक ऐसा स डांस एंड म्यूजिकल --

जो कि डैम में बहुत सारे गेट दिख रहे है पता नहीं कितने गेट होंगे।

सजावट के लिए गुलदस्ता भी हैं और इनके पीछे शायद शादी या रिसेप्शन हो रहा हैं जो की बहुत ही प्या --

यह पर एस.बी .आई. सेंटर हैं।

यहां एक ग्रामीण इलाके का ग्रामीण रोड है।